पीली घास दिख रही है और सामने और भी आदमी दिख रहे है और साइड में कुछ पेड़े दिखाई दे रहे हैं ऊपर रंगीन आसमान दिख रहा है।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

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक दुकान दिख रही है जो सफेद और ऑरेंज --

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक सड़क दिख दिख रहा है --

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दो आदमी खड़े हुए हैं जो ग्रीन कलर के जैकेट और सफेद टोपी लगाए हुए हैं सामने एक कैमरा रखा है पीछे सेड --

म बैठा हुआ है और बाइक में पीछे सफेद नेम प्लेट लगी हुई है।

अ डायरी और कैलकुलेटर दिख रहा है सामने बहुत सारे रेक बने हुए हैं जिनमें कुछ बॉक्स और सामान दिख रहा है नीचे --

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक गोलतला दिख रहा है जिसका पानी ग्रीन दिखाई दे रहा है और चारों तरफ उसमें --

दिख रहीं हैं पीछे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है और एक पोस्टर दिख रहा है।

और पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है पीछे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं ऊपर नी--

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एकअअ कंप्यूटर दिख रहा है जिसके बगल में मॉनिटर रखा हुआ है पीछे दिगानी ने --

जो लेक में अंदर सफेद कलर है वह लाल कलर की पट्टी बनी हुई--

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक बड़ा सा क्लास रूम है जिसमें नीचे ब्लैक एंड वाइट और ग्रीन कलर --

अम ट्रेंड्स गैड टीम ट्रेनिंग लिखा हुआ है और अंदर डमी दिख रहे हैं एक सूटे --

एँ ग्रे कलर की अलवारी है जिसके ऊपर बॉक्स दि --

ऐ पीले पिंक सफेद और ग्रीन सफेद मिठाइयाँ रखी हुई हैं और जिसके ऊपर वाली रैक में कथाई सफेद पिंक --

सफ़ेद पिन अ ग्रीन ऑरेंज और सफ़ेद थ्री लेयर वाली बहुत सारी मिठाइयाँ है और ऊपर भी बहुत सारे अलग-अलग कलरों की मिठाइयाँ दिख रही हैं और --

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ नीचे बहुत सारे बच्चे लड़के लड़कियाँ बैठे हैं जो सफेद कलर की टी शर्ट पहने हैं जिनमें पीछे काले कलर से --

दिख रहा है जिसमें ऊपर लाइट दिख रही है ऊपर कलर सफेद आसमान दिख रहा--

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक लड़का बैठा हुआ है जो ब्लैक एंड वाइट और कुछ न --

लगी हुई है ऊपर दीवार सफेद और ग्रीन दिख रही है एक ए_सी दिखाई दे रहा है साइड में दीवाल प्लक दिख रही है औ--

ए_सी मशीन रखी हुई हैं और पिछ सामने --

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक आदमी दिख रहा है जो काले शर्ट पहने हुए है जिसके पीछे कुछ कुर्सी --

और ये काले कलर का रैक दिख रहा है इसमें --

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक दुकान दिख रही है जिसमें ऊपर नीला पीला बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें रंगीन कलर से चंदन पान भंडार --